यह मैदान है। इसमें हरी-हरी घांस उग रही है। मैदान पूरा खुला हुआ है। नीला कलर दिखाई दे रहा है। पीला कलर दिखाई दे रहा है। पेड़ है।

ईट का घर है जो घर है ईटों का बना हुआ है क बन रहा है अभी एक पिंक कलर की है एक सफेद कलर का हाउस है और एक लड़का खडा हुआ है दो लड़के खडे हुए हैं।

पि-पिंक कलर है ऑर- ऑरेंज कलर है और पैंट जले हुए हैं पैकेट में जमा है पॉलिथीन में ब्लू कलर के सफ़ेद कलर के और--

एक लोडिंग गाडी है जो गाडी सफेद कलर की है लाल कलर की है।

एक गाडी है ए.सी. वाली जो सफेद कलर की है और धूप निकल रही है पीले कलर दिखाई दे रहा है।